माइक में कुछ कहते हुए।

मै यहाँ हु ऊपर कुछ बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है।

कुरकुरे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

रख दिखाई दे रहा है और हमे यहाँ काच की अलमारी में कुरकुरे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

मे यहाँ कुछ सुनसान सी जगह दिखाई दे रही है।